यहाँ ये एक दुकान है जिसमे अंदर बहुत सारे रैक बने हुए है जिनमे--

रखी हुई है और नीचे एक टेबल है जिसके साइड मे एक --

सामने एक गार्डन दिख रहा है जिसमे नीचे हरी घास लगी हुई है और चारों ओर--

यहा एक बिल्डिंग दिख रही है जो उपर सफ़ेद कलर की है और निचे क्रीम कलर बिच में चटर लगी हुई है काच में गेट--

यहा दो रेग मंदिर दिख रहा है जो ऑरेंज कलर का है जिसके दोनों साइड बहोत शिव्लिंगे बनी हुई है और सामने--

सामने एक काली मशीन दिख रही है जिसके साइड मे नीले कलर पुता है जिसमे--

डेसल लिखा हुआ है ये तेस्ला बनाने मेसिन है ऊपर रजनी थार्न इंजीनियर्स लिखा हुआ है।

और पीछे और बिल्डिंग दिख रही है कोई सफेद कोई क्रीम देख रही है खंबे दिखाई दे रहे हैं ऊपर सफेद और ब्लैक आसमान दिख रहा है।

कलर की है जिसपे बड़ा पोस्टर लगा है जिसमें मेकअप की फोटो छपी हुई है ल आप--

ये फेस की बालों की और फे ऊपर ब्ल्यू ने--

रखे हुए है और नीचे रंगबिरंगी केक रखे हुए है और इसके नीचे--

मे पेड़े लगे हुए है और ऊपर हरी नेट बंधी हुई है सामने दीवार के--

यहाँ सामने एक पार्क है जिसमे सामने एक बड़ा झूला दिख रहा है और सामने एक पेड़ है इसके नीचे एक--

अं एलियन का पुतला बना हुआ है जो ग्रीन और वुडन कपड़े पेहने हुए है उसके पीछे--

खम्भे है जो क्रीम कलर के उपर कथाई कलर की है और बहार कुछ पेड़ दिख रहे है और खम्बा है।

काले कलर का और दो आदमी है निचे पीली मिट्टी है और साइड में कुछ हरे पेडे लगे हुए है दीवाल है जो पीले--

यहाँ सामने एक दुकान है जिसमे ऊपर पीला पोस्टर लगा है जिसमे कुछ चित्र छपे--

यहाँ सामने बहोत सारे कारे है जो काले कलर की और सफ़ेद कलर की है पीछे दीवाल ग्री कलर की है कार पर--

दो झंडे लगे हुए है और बीच में एक से दूर आदमी बैठा हुआ है सामने एक बिल्डिंग है जो--

ऊपर पीले कलर की नीचे खंभे काले दिख रहे हैं जिसके ऊपर सफेद आसमान--

यहां एक सामने झूला दिख रहा है जो लोहे का है जिसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है नीचे बहोत सारी लोहे--

और बाहर रोड पर कारे दिख रही है और बिल्डिंग दिख रही है बहुत से पेड़े दिखाई दे रहे है।

यहाँ कुछ टेबले लगी है जो ओ रैक बने हुए है जिनके ऊपर--

सफेद कपड़े पेहने हुए खड़ा है वो पीछे काच का गेट है और नीचे फ--

कुर्सी राखी हुई है साइड में भी बहत सी पोस्टर लगी हुए है अंदर कुछ आदमी बैठे हुए है।

यहाँ एक हॉल है जिसमे बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है बीच मे एक नीली सफेद कारपे--

गोदरेज रखी है जो काले कलर की है और ऊपर दीवार पर ट्यूबलाइट लगी हुई है ऊपर ।

एह कुछ गिफ्ट रखे हुए है और सामने भी बहोत सारे कुछ गुलदस्ते ही है फोटोआ हैं।

यहां एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं जो पीले कलर की हैं जिसके बाहर दीवार है जो लाल है और--

बड़ा लोहे का गेट लगा है जो काले और नीले कलर का है और बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है दीवार के साइड में--

लाइन से बहोत सारी साइकिलें खड़ी हुई हैं एक कार दिख रही है बहोत--

पीले कलर की लाइट है और बाहर कुछ इस्टेज बने है जिनमे बहोत ही कलर दिख रहे है।